पर्दा दिखाई पड़ रहा है जो की व्हाइट कलर पिंक कलर में दिखाई पड़ रहा है। सामने कुछ पेड़ दिखाई पड़ रहा है जो की ग्रीन कलर मे दिखाई पड़ रहा है। सामने कुछ पेड़ और दिखाई पड़ रहा है जोकि ब्लैक कलर दिखाई पड़ रहा है। सामने एक रेलिंग जैसा बना हुआ है जिस पर कुछ कपड़ा टंगा हुआ है। सामने एक बोर्ड जैसा दिखाई पड़ रहा है।

यहाँ अंदर जाने के लिए दरवाजा से जगह दिखाई पड़ रही है। सामने एक बाइक दिखाई पड़ रही है। सामने कुछ पानी भरा हुआ है । नीचे मिट्टी दिखाई पड़ रही है जो की ब्राउन कलर में दिखाई पड़ रही है। साइड मे घांस दिखाई पड़ रही है जो की ग्रीन कलर मे दिखाई पड़ रही है। सामने एक शटर दिखाई पड़ रहा है जो की व्हाइट कलर का है जो की बंद है।

देखे यहाँ पर एक टेबल दिखाई पड़ रही है। टेबल पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है। नीचे फर्श दिखाई पड़ रही है जो की ब्लैक और व्हाइट कलर मे दिखाई पड़ रही है। सामने पंखा दिखाई पड़ रहा है जो की ब्राउन कलर मे दिखाई पड़ रहा है। ऊपर छत दिखाई पड़ रही है जो की व्हाइट और येलो कलर मे दिखाई पड़ रही है। एक लाइट जलती हुई दिखाई पड़ रही है।

पीछे दीवार दिखाई पड़ रही है जोकि रेड़ कलर हल्की-सी ब्लैक कलर मे दिखाई पड़ रही हैं। सामने एक पेड़ दिखाई पड़ रहा है जो की सूखा हुआ है। जो लकड़ी का पेड़ है। सामने एक खंबा दिखाई पड़ रहा है उसमे कुछ तारे जाते हुए दिखाई पड़ रही है। सा --

सामने बोर्ड दिखाई पड़ रहा है जो की ब्लैक कलर मे दिखाई पड़ रहा है। पीछे दीवार दिखाई पड़ रहा है। दीवार पर कुछ डिज़ाइन बनी हुई हैं। सामने कुछ खिड़की दिखाई पर रही है जोकि व्हाइट कलर दिखाई पड़ रही हैं। सामने खिड़की पर पर्दे टंगे हुए हैं जोकि ब्राउन कलर में दिखाई पड़ रही हैं।

ये जिम का पिक है यहाँ पर बहुत सारी मशीन दिखाई पड़ रही है मशीनों पर ब्लैक कलर दिखाई पड़ रहा हैं पीछे दिवाल दिखाई पड़ रही हैं जो कि येलो कलर मे दिखाई पड़ रही है पीछे खिड़कियां दिखाई पड़ रही हैं जिसमे ग्रीन कलर की शैडो जैसा बना हुआ है सामने पंखा दिखाई पड़ रहा हैं ऊपर की शैडो ब्लैक कलर मे दिखाई पड़ रही हैं।

हॉल जैसा दिखाई पड़ रहा है सामने एक सोफ़ा पड़ा हुआ है सोफे पर ग्रीन कलर गद्दा पड़ा हुआ है सामने एक टेबल दिखाई पड़ रहा है एक दरवाज़ा भी दिखाई पड़ रहा है दरवाज़ा बंद है सामने एक आदमी खड़ा हुआ है सामने की वाल पिंक कलर में दिखाई पड़ रही वहाँ पर स्विच बोर्ड भी लगा हुआ है।

कमरा दिखाई पड़ रहा है जिसमे व्हाइट कलर का दरवाजा दिखाई पड़ रहा है। दरवाजा बंद है। सामने एक कुर्सी दिखाई पड़ रही है जो की ब्लैक कलर की--

ये एक टेबल दिखाई पड़ रही है जो वाइट कलर दिखाई पड़ रही है सामने एक दरवाज़ा दिखाई पड़ रहा है जिस पर कांच लगा हुआ है उसपे कुछ सामान रखा हुआ है सामने एक पोस्टर दिवार पे लगा हुआ है दिवार पर ग्रीन कलर में दिखाई पड़ रहा है सामने एक शटर जैसा दिखाई पड़रा है जो के ब्राउन कलर में दिखाई पड़ रहा है।